अब स सामने को ऑटो भी दिखा टमटम जा रहा है और साइडा से पाड़ा से मारा गया कुछ घरा भी दिख रहे है और थोड़े से पौधे भी दिख रहे हैं।

और सामने से कुछ आदमियां भी दिख रहे ठहरे हुए सामने कुछ छोटे सिकड़ियां भी दिख रहे उपर जाने के लिए और चटाई अच्छी तरह से बिछाई गई है और नीचे फोकस लगाया गया है।

जो पेहनाए जाते है बहोत सारे हारे मिलते हैं ये ये वो मार्केट है यहाँ पर बहोत सारे हारे मिलते बहोत स दुकान खुले हुए है और बहोत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लाइटिंग भी चालू हुई है शाम का टाइम लग रहा --

यह किसी का कमरा दिख रहा है यहां पर डोर खुला हुआ दिख रहा हैं ओपे पोस्टर लगा हुआ है।

यह पीले फूल दिख रहे हैं ये फूल अक्सर दूल्हे को हार बनाकर चढ़ाए जाते हैं दुल्हन के गले में पहनाए जाते हैं दुल्हन के--

ये सामे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही हैं और सामे बिल्डिंग के सामे बहोत सारे बाइक दिख रहे हैं और एगो ऑफिस दिख रही है सामे पॉल्यूशन की।